ये एक नदी किनारा दिख रहा है।

ये एक बड़ी सी शॉप दिख रही है।

कुर्सियाँ भी दिख रही है और व्हाइट सोफ़ा भी दिख रहे हैं।

गाड़ियां भी दिख रही है एक लोग भी दिख में आ रहा--

दिए भी दिख रही है बहुत सी गाड़ियाँ भी दिख रहे हैं लोग भी दिख रहे हैं।

इसमें बहोत सी टाइल्सें से दिख रहे हैं।